इसमें ब्राउन कलर के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग महेल के रूप में दीख रही है।

यह तस्वीर किसी शॉप की नजर आ रही है जो शॉप कॉफ़ी की नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक गमले की लग रही है जो की नर्सरी में है।

जो की गोल्डन रंग की कढ़ाई कर रखी है।

जो की बैलून से ऊपर सजावट --

यह तस्वीर सेक्टर पच्चीस के सामने स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारे की है।

और यहां पर सारे बुजुर्ग नजर आ रहे है।

और ठीक इसी बस के सामने कुछ पुलिस कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं।